ऊपर छत पे बहुत सारे लाइटिंग और सीरीज लगी हुई है।

यहाँ पर सीमेंट के लंबे - लंबे बहुत सारे पिलर मै देख पा रहा हूँ जिसमें लोहे की छड़ ऊपर की ओर निकल --

जिससे घोड़ा खरगोश बदक और भी बहुत सारी आकृतियां बनी--

और पीछे की तरफ सफेद रंग एक रौशनी आता दिख रहा है।

ऊपर आसमान नीला दिख रहा है।

एक स्टेज के ऊपर तीन महिलाएँ नृत्य करते हुए दिख रही है यह नीचे घुटनों के बल बैठी हैं।

सफ़ेद व्हाइट बोर्ड पर वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है ऊपर एक पंखा दो बड़े ट्यूब लाइट भी लगे हुए है।

पीछे नीले रंग के बड़े-बड़े मकान दिख रही है जिनकी छत नीली है नीचे से सफेद रंग की है।

हरे रंग की दो बड़े पेड़ पीछे की ओर देखे जा सकते है ऊपर आसमान नीला हैं और सफेद रंग के बहोत सारे बादल दिख रहै है।

जबकि एक बड़ी सी स्क्रीन पीछे दीवाल के तरफ दिख रही है ऊपर छत पे सफेद रंग के बहुत सारे लाइट जल रहे है।

और कुछ तगारी में समान ले कर जा रहे है आगे की और कुछ लम्बे लम्बे सफेद बांस भी दिख रहे है।

और कुछ गाडी में सामान लेकर जा रहे है आगे की ओर कुछ लंबे-लंबे सफेद बाज़ भी दिख रहे है।

सामने की दीवार पर एक तस्वीर है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने है जबकि एक व्यक्ति ने नीले रंग की ड्रेस पहनी है।

काले रंग का एक लम्बा सा खंबा ऊपर टीन शेड में लगा हुआ है।

सामने में एक लड़का पीले रंग की टी शर्ट को पहन के खड़ा है उसके कंधे पर लाल रंग का एक बैग है और तो व्यक्ति सामने की ओर दिख रहे है।

बगल की दीवाने दीवारे बी सफेद रंक की दिख रही है किसी गाड़ी रोशनी इन गेट के ऊपर पड़ रही है।